यहाँ पर एक चर्च जहाँ पर क्रिश्चियन लोगों की पूजा करने आते हैं आस-पास में बहुत सारे लोग के हैं और लोग यहाँ पेड़-पौधे भी लगा हुआ है और देख सकते हैं।

यहाँ पे एक दुकान है। दुकान के अंदर में बोहोत सारे समान हैं जैसे चॉकलेट के डिब्बे और भी बोहोत सारे खिलौने हैं और देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी है और बोहोत सारे --

किनारे यह एक डांस स्टेज है जिसमें लड़की लोग डांस कर रही है और भी पीछे में मूर्ति लगे हुए हैं और पोस्टर भी लगा हुआ है जैसे देख सकते हैं डांस कर रही है।

यहाँ पर एक पार्क है जो हर भरा है और कुछ पेड़-पोधे भी लगे हैं और कुछ पेड़-पोधे दिख रहें हैं। फूल बहुत अच्छे हैं। अगल-बगल में घर भी हैं और एक पेड़ बहुत अच्छे दिख रहें हैं जो थैले मे रखे हुए हैं।